यहां पे एक रास्ता है जाने के लिए एक यहां पे साइड में है।

पर भी है साड़ी पहने हुए हैं वो--

हरा है आधा व्हाइट है और यहां पे पानी की भी टंकी है।

यहां पे सीढ़ियां जाने के लिए दो लड़के भी धरे हुए हैं दो हैं।

जो यहाँ पे एक चेयर रखे हुए है बड़ी सी खिड़किया है उसके सामने नीचे से यहाँ पे छोटे से--

कलर मारा गया है यहां पे डेकोरेट किया गया पूरी और यहां पे है सारे तरफ यहां पे फिटिंग का काम किया गया है लाइटिंग चालू है पी_ओ_पी किया गया है।

और यहां पे वह जाने आने के लिए यहां पे बहोत गर्दी नजर आ रही है।

लड़का है जो लड़के दो यहां पे थे मारा गया है।